ब एक ट्रक भी खड़ा हुआ है।

और यहां पर एक बड़ा सा बेड भी है।

जिसके ऊपर लिखा हुआ है।

इस फोटो में दिखाया गया है--

इस फोटो में देखाया गया है कि--

इस फोटो में दिखाया गया है कि--

बड़ा सा सोफा रखा हुआ है और यहां पीछे एक बैकग्राउंड में बहुत हरी हरी --

बी केयर योर फेब्रिज और सर्वे --

इस फोटो मे दिखाया गया है कि यहां पर एक बड़ा सा हाल है इसके अंदर यहा एक टेबल लगा हुआ है।

बड़ी बड़ी अलमारियां हैं और यहां एक बड़ा सा गेट दिखाया गया--